कुछ दिख रहा है कांच टाइप का ये कुछ ऊपर समान रखे है कुछ नीचे समान रखे है।

यहा पास जमीन भी दिख रही है यहा पास एक डस्टबीन छोटासा दिख रहा है।

ये कोइसा पूल है यहाँ पा एक बच्चा देख रहा है। जो बहुत छोटा है उसकी माँ उसको देख रही है। यहाँ पर एक बच्चा जो ट्यूब ला रहा है यहाँ पर एक आदमी--

ये कोईसा रेस्ट्रारंट है जहा पास प्लेटे दिख रही है अ चेअर दिख रही है और पिल्लर भी दिख रहे है जो पर्पल कलर की यहा पास लाइट लगी हुई है जमीन दिख रही है।

ये कोई सा जगह है जहा पास खूब सारी मशिने दिख रही है यहा पास लाइट भी है यहा पा--